पेड़े लगी हुई है कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है और दो मोटरसाइकिल पर दो दो आदमी--

रंगीन कलर की दिख रही हैं ऊपर ब्लैक एंड व्हाईट आसमान दिख रहा--

यहां एक दुकान दिख रही है जिसमें अंदर बहोत सारी रैक बने हुए हैं जिनमें बहोत से बॉक्स रखे हुए हैं नीचे एक लाल--

रखे हुए हैं और साइड में एक लंबा बॉक्स अह लगा है जिसमें बहुत सारे चश्मे लगे हुए हैं ऊपर छत सफेद कलर की है जिसमें--

यहां एक घर दिख रहा है जो सफेद कलर का है जिसमें कत्थई कलर की--

यहां सड़क दिख रही है जिसके किनारे एक कार दिखाई दे रही है जो सफे--

बड़े बड़े पिलर दिख रही है जिनमें ऊपर मोटी मोटी छड़े लगी हुई है और दूर एक घड दिख रहा है जो--

मिट्टी और है कहीं कहीं हरी घास दिख रही है और सामने कुछ आदमी ही बैठे हुए हैं एक आदमी पत्थर पर--

बनी है और पीछे रैको में बहोत से कपड़े दिख रहे हैं सामने लंबे लंबे--

यहां एक घर दिख रहा है जो नीले कलर का है जिसमें ऊपर रैलिंग बनी है जो सफेद कलर की है।

यहां एक बड़ी नदी दिख रही है और ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं जिनमें से पानी--

और महिलाएं दिख रही हैं दो सफेद झोले दिख रहे है और प ऊपर--

पेड़ फूलों के पेड़ लगे हुए हैं। ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

ग्रीन कलर के हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीला जिन्स --

सेमसन लिखा हुआ है नीचे और भी बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

लगे हुए हैं पोस्टरों के पीछे भी कुछ कार दिखाई दे रही है और पीछे भी बहुत सी--